आप सभी को नमस्कार
यह शुद्ध mysql php टयूटोरियल है
मैं आपको जुड़नेडेटा पुनः प्राप्त करने एरर्स सम्भालने और डेटा सुधारने के बेसिक्स बताऊँगा
अतः यह कुछ sql कोड और कुछ sql क्वेरीस को समाविष्ट करेगा
अच्छा! चलिए शुरू करते हैं
यहाँ मैं mysql की डायरेक्टरी संरचना दर्शाने जा रहा हूँ
और हम यहाँ कुछ फाइल्स बनाएँगे
मैं पहली फाइल बनाऊँगा और उसको connectphp बोलूँगा
मैं यहाँ आऊँगा mysql नामक फोल्डर पर क्लिक करता हूँ और उसको connectphp के रूप में सेव करता हूँ
अब यहाँ हम एक अलग फाइल बनाएँगे और सभी पेजों के साथ सम्मिलित करेंगे जिन्हें हम इस्तेमाल करेंगे
यह आपके डेटाबेस से जुड़ने के लिए काफी सरल है
हम क्या करेंगे कि अपना include फंक्शनfunction टाइप करेंगे और इस फाइल को दर्शाएँगे
मैं एक और फाइल बनाऊँगा जोकि मेरी प्रमुख mysql फाइल है
एक कोड के साथ जिसे मैं आप सबको दिखाऊँगा
ठीक है तो मुझे मेरा mysql dot php खुला मिला
यह php कोड्स हैं और हमें php टैग्स की आवश्यकता है और वही सबकुछ php से जुड़ जाएगा
मैं इस include फंक्शनfunction को एक मिनट में समझाऊँगा
सर्वप्रथम मैं आपको बताऊंगा कि डेटाबेस से कैसे जुड़ें
यदि आपको पता नहीं कि आपने इसे अपने वेबसर्वर में कहाँ रखा है तो मैं आपको सलाह दूँगा कि phpmyadmin नामक एक एप्लिकेशन को देखें
यह एक डेटाबेस इंटरफेसinterface php में लिखा गया प्रोग्राम है या दूसरे शब्दों में एक स्क्रिप्ट
यहाँ हम मेरी सर्विस सेवा मेरे डेटाबेस के अंदर देखेंगे
बल्कि मेरे सर्वर में my sql सर्वर में यह हमारी टेबल की सूचना हमारे डेटाबेस की सूचना और मेरे सर्वर के बारे में सूचना इत्यादि देता है
हालाँकि हमें इसके बारे में जानने की आवश्यकता नहीं हैयह एक प्रोग्राम के लिए अच्छी शुरुआत हैयदि आप अभीअभी php mysql या केवल mysql को सामान्य तौर पर प्रयोग करना शुरू कर रहे हैं
यह अपने डेटाबेस के इंटरफेस को शुरू करने के लिए एक अच्छा तरीका है बजाय इन कार्यों को कमांड लाइन की सहायता से करने के
कमांड लाइन इस्तेमाल करना पहली बार वालों के लिए मुश्किल हो सकता है
अच्छा तो हम यहाँ अपने डेटाबेसेस देख रहे हैं
मुझे phpacademy नामक एक मिला है और मुझे phplogin नामक एक मिला है जिसको मैंने दूसरे ट्यूटोरियल में बताया है जो मैंने बनाया है
अन्य केवल स्टैन्डर्ड हैं
ये केवल डेटा को रखने के लिए हैं
उनको डिलीट न करें
आपको केवल इतना करना है कि नये डेटाबेसेस बनाने हैं
यह करने के लिए आपके पास यहाँ एक सामान्य बॉक्स है
हम अभी डेटाबेसेस बनाने जा रहे हैं
मैं अभी के लिए मेरी phpacademy डेटाबेस में कार्य करूँगा
यह काफी सरल है
अतः यह अभी डेटाबेस बना रहा है
यह सरल है
आप नाम टाइप करिये और create पर क्लिक करिये
मेरी php पहले से ही यहाँ बन चुकी है
अतः मैं इसको इस्तेमाल करूँगा
इस पर क्लिक करिये और आप देख सकते हैं कि अंदर काफी टेबल्स हैं
यह यहाँ पर चिह्न से दिखाया जा रहा है जब हम phpmyadmin इस्तेमाल करते हैं
यह मेरे गेस्टबुकguestbookट्यूटोरियल से गेस्टबुक है
अब मैं इस ट्यूटोरियल का वर्णन करने के लिए इस डेटाबेस पर एक नया टेबल बनाऊँगा और मैं इसे people बोलूँगा
फील्ड्स की संख्या काफी महत्वपूर्ण है
आप इसको खाली नहीं छोड़ सकते हैं
आपके टेबल में फील्ड्स की संख्या प्रत्येक डेटा के कॉलम को रखने के लिए होती है
उदाहरणस्वरूपआमतौर पर पहला जब आप रेकॉर्ड्स के साथ काम करते हैं आपके पास id हो सकती है जोकि एक संख्यात्मक वेल्यू है
अतः यह एक संख्या है जिसकी प्रत्येक बार वृद्धि होने जा रही है
यह आपको अपने रिकॉर्ड्स को संकेत करने की अनुमति देगा जो विशिष्ट संख्या से संचय किया जा रहा है
और इसे अक्सर प्राइमरी की निर्धारित करिये
यदि आप डेटाबेसेस से परिचित नहीं हैं तो आपको प्राइमरीprimary कीkeyजैसी शब्दावली को देखना शुरू करना चाहिए
मैं सेकन्डरीsecondary कीज़keys के साथ काम नहीं करूँगा क्योंकि यह mysql डेटाबेस के साथ करने के लिए किसी भी तरह से काफी आसान तरीका है
केवल डेटाबेसेस को सामान्य रूप से पढ़िए यदि आपके पास microsoft access या कोई अन्य डेटाबेस प्रोग्राम है
मैं आपको डेटाबेस के समूह को सीखने की सलाह देता हूँ
अच्छा तो फील्ड्सfields की संख्या इस पर निर्भर करती है कि कितना डेटा आप रखना चाहते हैं और क्या डेटा आप रखना चाहते हैं
आमतौर पर जब मैं फील्ड्स बनाता हूँ मैं एक सामान्य खाली डाक्युमेन्टdocument लाऊँगा
और मैं वो फील्ड्स जो मैं चाहता हूँ टाइप करना शुरू करूँगा
पहला हमेशा id होगा
यह एक स्ववृद्धि वेल्यू है हर बार मैं एक नया रिकॉर्ड बनाता हूँ
अतः यह पहले रिकॉर्ड के लिए 1 होगा 234 और इसके बाद डेटा संग्रहित किया जाएगा
यह बहुत ही लाभदायक फील्डfield है
चूँकि मेरा टेबल people है मैं लोगों के बारे में कुछ डेटा रखूँगा
अतः मैं पहले firstname टाइप करूँगा और फिर मैं lastname टाइप करूँगा और फिर age और फिर gender
इसको सरल रखने के लिए हम इसको अभी के लिए छोड़ सकते हैं
अतः हम यहाँ देख सकते हैं कि हमें 5 फील्ड्सfields मिली हैं
मैं यहाँ वापस जाऊँगा और 5 टाइप करूँगा और go क्लिक करूँगा
यह बहुत बढ़िया होगा कि एक मिनट में यहाँ एक pop up देखने मिलेगा
नहीं आपको नहीं मिलेगा क्योंकि हमने अभी तक अपने फील्ड्सfields के नाम नहीं बनाएँ है
ठीक है! हमारे पास यहाँ एक मान्य है
इनके लिए बहुत सारे विकल्प हैं
किन्तु फील्डfield एक fieldname है
अतः पहला id होने जा रहा है
type डेटा टाइप है जिसे आप इस फील्डfield में रखना चाहते हैं
कुछ भी जो इसमें होगा इस डेटाटाइप में जोड़ना अनिवार्य है
varchar जोकि variable characters को दर्शा रहा है काफी सामान्य है यह काफी लाभदायक है और इसको लम्बाईlengthकी आवश्यकता है
हमारे पास यहाँ 25 अक्षरोंकैरेक्टर्स की लंबाई हो सकती है
आपके पास 250 अक्षरोंकैरेक्टर्सकी लंबाई हो सकती है
या 100 अक्षरोंकैरेक्टर्स की लंबाई
या 1 अक्षरकैरेक्टरलम्बा
वास्तव में हम केवल डेटा का टाइप और लंबाई संचय कर रहे हैं
यह संचय करने में मदद करता है उदाहरणस्वरुप आपका firstname
चलिए अपना फील्डनेमfieldname लिखते हैं यहाँ पर firstname है और मेरे पास varchar है
500 अक्षरकैरेक्टर्सटाइप करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि हम अनावश्यक मात्रा में डेटा इस्तेमाल करेंगे
विशिष्ट रूप से firstname 25 अक्षरोंकैरेक्टर्ससे अधिक नहीं होगा
भले ही ऐसा है यह 30 या 35 अक्षरोंकैरेक्टर्ससे अधिक नहीं होगा
किन्तु अभी के लिए मैं अपना firstname 20 या 25 अक्षरोंकैरेक्टर्सके रूप में संचय करूँगा मैं यहाँ 20 रखूँगा
हमारी id एक पूर्ण संख्या होगी क्योंकि यह एक संख्या है
यह स्ववृद्धि होगी
यह 1234 होगा
रिकॉर्ड्स की मात्रा हम इस्तेमाल कर रहे हैं
और यहाँ हमारे पास कुछ अन्य विकल्प हैं
अब यह यहाँ पर प्राइमरी की है
हम इसे चुनने जा रहे हैं और कुछ अधिक में हम देख सकते हैं कि हमें auto underscore increment मिला है
यह एक स्ववृद्धि है
यह इस विशिष्ट फंक्शनfunction को देता है
जब भी आप कोई नया रिकॉर्ड दर्ज़ करते हैंयह अपने आप ही बढ़ जाता है
अतः यहाँ हमारे पास firstname है
हमारे पास lastname है और मैं फिर से इसे 30 निर्धारित करूँगा
और हमारे पास क्या है
हमारे पास age है और स्पष्ट रूप से यह एक पूर्ण संख्या है और हमारे पास gender है
ठीक है
अब यहाँ age के स्थान पर मैं date of birth लिखूँगा
अतः यह जन्मतिथि है
मैं इसे date से निर्धारित करूँगा
यहाँ मैं date डेटाटाइप को ढूँढने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं देखूँगा कि यह कैसे कार्य करता है
अतः date के लिए लंबाई यहाँ निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है
इसके लिए हमारे पास एक मानक प्रारूप है अतः इसके लिए हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है
अब मैं gender को 1 कैरेक्टर का varchar निर्धारित करूँगा
अब हम पुरुष के लिए m और स्त्री के लिए f रख सकते हैं
ठीक है यदि हम यहाँ जाएँ हम देख सकते हैं कि यहाँ अनेक विकल्प हैं
आप इसको खुद से commentकमेंटकर सकते हैं
आप खुद से स्मरण कर सकते हैं कि यह फील्ड क्या करती है
किन्तु आमतौर पर अपने fieldname को ठीक से नियुक्त करिये जिससे कि आपको पता हो कि आप क्या डेटा संचय कर रहे हैं
ठीक है यहाँ मैं save पर क्लिक करूँगा और आप देख सकते हैं कि people यहाँ प्रकट हो गया है
यह यहाँ आप से एक क्वेरी पूछेगा
अब जब मैं पहले कमांड लाइन की बात कर रहा था यह वह है जो आपको बनाने के लिए टाइप करना पड़ता
हालाँकि हमने अपना सेव करने के लिए एक ग्राफिक यूज़र इंटरफेस का इस्तेमाल किया है
हम यहाँ नीचे देख सकते हैं हमारे पास हमारी फील्ड्स हमारे टाइप्स और हमारी कॉलेशन विशेषताएँ उदाहरण के लिए null डेटा हैं
डिफॉल्ट वेल्यू जोकि संचय है उदाहरण के लिए यदि आपके पास फील्डfield है क्या उपयोगकर्ता पंजीकृत है has the user registered
या आपकी मर्जी का कुछ भी आप यहाँ भी डिफॉल्ट इस्तेमाल कर सकते हैं
उदाहरणस्वरूप यदि मैं सबको संचय करना चाहता हूँ मैं यहाँ डिफॉल्ट से पुरुष या डिफॉल्ट से स्त्री पंजीकृत करता हूँमैं यहाँ m या f टाइप कर सकता हूँ
और हमारे पास यहाँ स्ववृद्धि है और साथ ही कुछ अन्य डेटा जिनको हमें इस टयूटोरियल में जानने की आवश्यकता नहीं है
ठीक है यहाँ हमने अपना टेबल बना लिया है और यदि आप इसके भाग 2 में जाते हैं मैं आपको दिखाऊँगा कि कैसे कुछ डेटा प्रविष्ट करें और साथ ही कैसे php का इस्तेमाल करके अपने डेटाबेस से डेटा प्राप्त करें
मुझसे भाग 2 में मिलिए आई आई टी बॉम्बे की तरफ से मैं रवि कुमार अब आपसे विदा लेता हूँ धन्यवाद